इस बिल्डिंग में हरे रंग के लंबे लंबे पर्दे लगे हुए हैं।

इस दुकान में बहुत सारी चार्जरे और हेड फोंस और ब्लूटूथ रखी हुई हैं।

इस बोर्ड मे एक कंप्यूटर का तस्वीर बना हुआ है।

लड़कियों के पीछे एक काले रंग का पर्दा लगा हुआ है।

इस दुकान में एक सीसे का काउंटर बना हुआ है।

सभी ने हाथ जोड़े हुए हैं।

दूसरे दुकान में एक लाल रंग का काउंटर बना हुआ है।

इस होटल मे बहोत सारे चेयर और टेबल भी लगे हुए हैं।